दुकान के ऊपर पोस्टर भी लगा हुआ है।

गाड़ी भी दिखाई दे रहा है इंसान भी दिखाई दे रहा है।

उपर में पंखा भी दिखाई दे रहा है बहोत सारा आईना भी दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन में एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे प्लास्टिक चेयर्स भी दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के बाहर तीन चेयर्स भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे जूता भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है तस्वीर में इंसान भी दिखाई दे रहा है एक एंबुलेंस गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक ज्वैलरी स्टोर दिखाई दे रहा है।

टीना भी दिखाई दे रहा है।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक इंसान भी दिखाई दे रहा है ऊपर में बहुत सारी लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।